यह सिल्वर कलर की है। इसके पीछे ग्रीन घास दिखाई दे रही है। यहाँ एक पार्क के आगे खड़ी हुई नजर आ रही है।